कुछ लोग एक साथ खड़े सेल्फी लेते दिखाये गए है इस के बाहर साइड में भी कुछ--

इस इमेज में एक बिल्डिंग दिखाई गई है बिल्डिंग के बाहर पार्किंग बनी हुई है।

और बाजु में एक छोटा-सा एक घर बना हुआ है इसपे केंद्रीय उफान अनु--

अ सभी आलमारियों में टॉय रखे दिखाए गए है दोनों तरफ--

टॉय रखे हुए है हुए है टॉय ब्लू ऑरेंज सभी कलर में है ऊपर छत पर लाइट --

खिड़कियाँ कांच की लगी हुई दिखाई गई है बाहर साइड निम का पेड़ लगा हुआ है।

इस इमेज में एक फूलो की गुलदस्ता की दुकान दिखाई गई है।

गेंदा के फूल और बीच में बाल्टियों में बहोत सारे उम फूल पोर्ट्स वाले दिखाए गए--

बिल्डिंग बनी दिखाई गई है खजूर --

पेड़ लगे हुए है अलग अलग गमले बने दिखाये गए है और साइड में एक बड़ा सा पेड़ लगा है। ऑरेंज कलर के पेड़ दिख--

नीचे कच्ची सड़क दिखाई गई है फर्स पर नीचे कुछ लम्बे है।

कप वगेरा जाने दिखाई गई है। छत में ऊपर लाइट्स लगी हुई है छत में एक झूमर लाइट लगी दिखाई--